काही कुछ स्टूडेंट्स है एक टीचर है बेंचेस है उसपे आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान रखा हुआ है कार्डबोर्ड फेविकोल सेंचुरी पेपर्स विंडो है है एक --

ये एक टेबल है इस पे एक पांच कलर के फ्लावर पॉट्स रखे हुए है एक रेड ग्रीन और ब्लू है एक पूरा ब्लू है।